यहां पर कुछ पक्षियां लगाई गई है और एक तरफ एक जाली नुमा--

इस पिक्चर के अंदर एक बड़े से हॉल की फोटो को दिखाया गया है उसके सामने एक बड़ा सा काउंटर बना--

इस पिक्चर के अंदर एक सामने की तरफ बहोत बड़ा नजर आ रहा है।

इसके पत्ते बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं और खेत के अंदर--

और सामने की तरफ एक कूलर चलता नजर आ रहा है।

प्लाई जो हैं जिसके ऊपर ग्रीन कलर का मैट लगाया गया हैं और नीचे के तरफ बहोत हरे भरे पेड़ पौधे और कुछ फूल के पौधे भी नजर आ रहे--

ये ग्रेशन के पोस्टर लगे हुए हैं सेक्टर चौतीस ए।